और साइडो में उसके टायर लगे है ब्लैक कलर के और फिर नीचे जमीन है खेतों वाली उसके ऊपर एक रस्सी है।

आदमी लेटा हुआ है तकिये पर डाक्टर है साइड में उसके मशीन से थेरपी कर रहा है नीचे के तरफ बॉक्स रखे हैं एक डलिया है ब्लू कलर का उसमें सारा सामान रखा है।